कई सारे खिड़की है एंड्रॉयड से आपका घेरा हुआ है और ऊपर छत्था है टीना का --

जिसमें गोल सा बना हुआ मशीन है ऊपर में सारा गिट्ठी लिए एक आदमी चल के ऊपर आ रहा है हाफ पेंट पहना हुआ ब्लू रंग का एंड ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए है।

बड़े-बड़े पत्थर से बने हुए हैं स्ट्रक्चर बने हुए हैं एंड आगे की ओर बहुत सारे जंगल है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बड़े-बड़े पेड़ है।

एक ऑफिसर का शोरूम है जिसमें सामने को एक टेबल है रेड एंड ब्लैक में एंड कुर्सी में दो आज लड़के बैठे में लाल कलर की कुर्सी है गद्दे की कुर्सी है।

इन दोनों के ऊपर एक दो मसाला के डब्बे रखे हुए हैं दो कॉफी के कप रखे हुए दो --

किया गया है पत्थरों से एंड पत्थर के बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे घास है फूसे एंड पानी के --

ने बच्ची को ब्लू कलर के पहने हुए बच्ची एंड ग्रीन कलर का औरत पहनी हुई है साड़ी एंड बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जिसमें फूल है।

लेफ्ट साइड में एक औरत येल्लो कलर का सूट एंड व्हाइट कलर का पेजामा पहनावा चप्पल पहन के घूम रहे हैं।

खाना उठाने वाले एक चम्मच एक प्लेट है सामने राइट साइड कि ओर।

ये एक सारी का शोरूम है जिसे बहुत सारे पुतले रखे हुए कपड़ा का शोरूम में जिसमें एस_बी_आई के राइट साइड में एसबीआई का ए_टी_एम है।

लैपटॉप रखा गया है माउस रखा गया है एंड सामने एक व्हाइट कलर का पंखा नजर आ रहा है राइट साइड में बहुत सारे से चेयर रखा गया है ब्लैक कलर का एंड सामने के और बहुत सारे --

एक बोतल रखा गया है जिसमें एक लाल कलर का बैग भी है रखा हुआ एंड एक धोती पहने हुए ब्लू रंग का खड़े हैं।

यहा पे एक पहाड़ है जिसमे पहाड़ के ऊपर कई तरिके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चांद की तरह राइट साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है।

सामने एक रोड है रोड के किनारे एक ऑटो खड़ा है जो ब्लैक एंड येलो में है एंड सामने की ओर एक वाइट कलर का --

ब्लू में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बना हुआ है घर बना हुआ है एंड लेफ्ट साइड की और एक --

व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए एंड लेफ्ट साइड के और एक ऑटो है जो ब्लैक एंड येलो में है उनके जस्ट बगल में एक लड़का खड़ा हुआ ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के।

यहां एक गढ्ढा है जिसमें ग्रिल है लोहा का ये रखा हुआ है बना हुआ एंड सामने को एक --

ये घर है घर के ऊपर बहुत सारे गमली में पेड़ फूल लगे हुए हैं एंड लेफ्ट साइट में कार खड़ी है एंड दो तीन स्कूटी एक --

हाफ सेंडो पहने हुए है सामने की और बोतल है राईट साईड कि और दो तीन खुर्सिया लगे हुई है कलरफुल छाते हैं।

आधा आदमी नदी पर खड़े हुए हैं हाथ में अगरबत्ती लिए हुए।

ये एक आदमी है जिसमें एक पीठ में बहुत सारे छोटे-छोटे बल्ब लग पीठ में लगाए हुए हैं।

ऊपर की ओर काम चल रहा है नीचे भी काम चल रहा है बहुत सारे बास से लगे हुए हैं ऊपर जो है छज्जा --

बच्चा चल रहा है जो लाल कपड़ा पहनो ऊपर नीचे एंड्रॉयड लेफ्ट साइड के फूल का गाज है जैसा फूल होगा वह लाल कलर के --

वाइट एंड रेड है कलर पर्दा का एंड बहुत सारे गाड़ियां खड़ा है।

एक बस है बस है बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

ये बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें बहुत सारे --